इतना मस्त लग रहा है वाह बहुत सुंदर लग रहा है देखने से बहुत खूबसूरत है।

बहुत खूबसूरत लग रहा है वाह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत सुन्दर है के देखने में बहुत सुंदर लग रहा है मस्त--